नल लोग जैसा भी शावर भी दिख रहे हैं।

यहां एक आदमी एक छोटी बच्ची के बाल कट कर दे रही है।

मुझे इस तस्वीर में एक स्टोर जैसा नजर आ रहा है।

यहां बहुत सारी गाय भी दिख रही है।

घर के पीछे एक बड़ी सी पर्वत भी नजर आ रही है।

रेड रिबन से कुछ लगाया हुआ भी नजर आ रही है।

यहां बहुत सारे कपड़े हैंगर में लटकाए गए हुए दिख रहें हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक शोरूम जैसा नजर आ रहा है।

यहां आदमी पूजा करने के लिए आए हुए हैं।

खुले आसमान भी दिख रही है।

इस तस्वीर में एक मार्केट जैसा दिखाई दे रहा है।

बगल में एक ट्रेन जाती हुई भी नजर आ रही है।

मुझे इस तस्वीर में बहोत सारी महिला दिखाई दे रही है।

यहां बहुत सारी बैनरे भी चिपकाई गई दिख रही है।

बगल में एक गाड़ी जैसा भी नजर आ रहा है।

यहा बहोत सारी लाइट भी नज़र आ रहे है।

मुझे इस तस्वीर में बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है।